ये तस्वीर एक दरिया की है | ये दरिया काफी लंबी है।

तस्वीर में एक घाँस का बहुत बड़ा मैदान है इस मैदान में बहुत सारे बच्चे खेल रहे है इनमे बड़े भी है।

इसके पास कुछ पेड़ हैं और साइड मे बाइक भी रख खड़ी है।

इसके सामने एक बहुत बड़ा मैदान है | मैदान में एक आदमी खड़ा है और इसके साइड में कुछ पौधे भी लगे हुए हैं।

इस मैदान में बहुत सारे पेड़-पौधे हैं और साइड से एक रास्ता भी निकल रहा है जो की इस बिल्डिंग के तरफ जाता है।

इन दुकानों में एक दुकान कलर का है दूसरी दुकान पर कुछ फल मिल रहे हैं।

इस तस्वीर में हम देखते सकते है कि एक सड़क है सड़क पर टोटो चल रहा है और दूसरी तरफ कुछ दुकानात है।

ये चेयर्स ग्रीन कलर के है इसके सामने दो-दो दो खिड़किया भी है।